वो अंदर कुछ जिम करने का समान रखा हुआ है जिनसे जिम करते हैं कुछ--

यहां पर एक आदमी भी दिख रहा हैं।

और सिपाल्टी नजर आ रही है साथ में उसकी कोई--